इतके पास एक तालाब भी दिख रहा है तालाब मे कुछ नावें भी खड़ी हुई है जिनमें पानी भरा हुआ है।

एक सामने एक बाल्टी भी रखी हुई दिख रही है पीछे थर्माकोल के डब्बे भी रखे हुए हैं।

इसमे कई कलर के फूल लगाए गए है इसमे गुलाबी हरे सफेद पीले फूल है।

इस चित्र में कुछ अलमारियां बनी हुई दिख रही हैं जिसमें कुछ सामान रख़ा हुआ हैं।

इसमें बहुत सारे अगरबत्तियों के पैकेट भी रखे दिख रहे हैं दूसरी अलमारी में मैगी और नूडल्स भी रखे दिखाई दे रहे हैं।

सोफो के पीछे बहुत सारी कुर्सिया लगी हुई है बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है ऊपर कुछ लाइटे भी लगी हुई है ।

इस चित्र मे तालाब दिख रहा है।

पार्क मे कुछ लोग फ्री बैठे हुए दिखाई दे रहे है।